इस फोटो में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है उसमें डाइनिंग टेबल रखा हुआ है चेयर लगा हुआ है।

और बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं ए_सी लगा हुआ है कूलर लगा हुआ है बल्ब लगा हुआ--

उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है अम बहुत बड़े-बड़े खिरकिया हैं और एक टट्टी लगा हुआ है अम्म और ये स्कूल का बिल्डिंग है।

चेयर पे और मोबाइल का ये दुकान है और एक ग्राहक भी आया हुआ है और ये रोड के किनारे दुकान --

इस फोटो में एक आदमी दिख रहा है और एक चेयर दिख रहा है और अं जो ऑफिस है सो--

ये बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहे है बिल्डिंग के ऊपर मोटर लगा हुआ है और और--

जो कोट पैन पहना हुआ है ब्लैक कलर का जींस पहना हुआ है कैप लगाया हुआ है कैप पर बॉय लिखा हुआ है एक चश्मा लगाया हुआ।

इस फोटो में पीछे की तरफ एक स्कूल है जिसपे बोर्ड लगा हुआ है।

और बहुत सारे नाव चल भी रहे हैं बहोत सारे आदमी नाव चला रहे हैं और बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

एक बहुत बड़ा तीन फ्लोर का बिल्डिंग है उसपे नौतन खाना लिखा हुआ है।

उसमें बहोत सारे चेयर लगे हुए हैं बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं एक आदमी लेटा हुआ है दुकान में रंग बिरं की साड़ियां हैं।

जो रामनगर पश्चिम चंपारण में पड़ता है इसकी अस्थापना उन्नीस सौ सत्तर --

एक नदी है नदी पे ब्रिज बना हुआ है वहां पे बिजली का पुल है और नदी के आस पास बहोत सारे--

अ हॉस्पिटल का नाम संजीवनी हॉस्पिटल है और इसके सामने बहुत सारे गाड़ियाँ लगी हुई है और चेयर लगे हुए हैं हॉस्पिटल में आदमी सब खड़े हैं।